बीच से रास्ता जाता है उसके साइड में एक पार्क है जहां पे लोग घूम सकते हैं।

और डेली यूज होने वाला सामान--